शीशा भी है और अअअ लाइट यहाँ पर भी जल रहा है और बहुत सारे आदमी भी यहाँ--

बॉडी भी बनाते है अ अ मशीन भी यहाँ पर अअअ और यहाँ रोज एक्सरसाइज करने आते है और अ सुबह--

एक डॉग है ए डॉग का ओप्प्रेशन हो रहा है दो डॉक्टर यहाँ पे कर रहे है ओप्प्रेशन और अ यहाँ पे सुई भी लग रहा है।

चोट भी लगा है डॉग को और यहाँ पे दो चार बोतल भी यहाँ दिख रहे है और दवाई का सामान भी यहाँ पे है और हारा कपड़ा यहाँ--

एक दीवान पलंग है यहाँ पे दो तीन तकिया भी है और वाइट चद्दर भी है यहाँ पर बिछाया हुआ है।

कोई कंपनी के यहाँ पे कारखाना है और वाइट लाइट भी यहाँ पर जल रहा है और यहाँ पे लिखाया है।